ऐसा लग रहा है किसी लड़की की सी बारात आने को है और उसका घर को पूरी तराह से--

ऐसा लिखा हुआ साइन बोर्ड टंगा हुआ है।

चिकन और मछली का यह दुकान किसी गांव और कस्बे में--

झोपड़ी लगा कर बेचता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ ग्राहक खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

ढेर सारी महिलाएं एक कतार में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही हैं।

चिकेन और मटन बिकता हुआ दिखाई दे रहा है।

और यह जगह जो है अभी बंद पड़ा हुआ है यानि इसका मुख्य दरवाजा जो है बंद है।

और इस मुख्य सड़क के ऊपर मे एक ओवर ब्रिज भी बना हुआ है और ओवर ब्रिज से किसी ने इसको कमरे मे कैद कर लिया है।

नाई बनाने बाल बनाने वाले हजामत करने वाले नाई--

के बगल का यह एक दृश्य है और यह पार्क जो है काफी साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण में बना हुआ दिखाई दे रहा--

शादी विवाह के कार्यक्रम में रिसेप्शन का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

जो काफी सुंदर और स्वच्छ वातावरण में बना हुआ है।

एक मोटरसाइकिल सवार खड़ा हुआ है और कुछ बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है।

किराने दुकान का यह एक मॉल दिखाई दे रहा है।